और हम देख सकते है पास में ही एक बड़ा नीला बैनर लगा हुआ है उसमे भी हिंदी और --

यहाँ पर हम देख सकते है कि बहुत सारे बच्चे दिखाई दे रहै है जोकि झूला झूलते --

उसमे वो कुछ चिपकाई हुई नजर आ रही है एक महिला खड़ी हुई भी नजर आ रही है।

कुछ पत्ते छोटे नजर आ रहे है कुछ पत्ते बड़े दिखाई दे रहे है दूर पर एक बड़े पेड़ की जड़ --

बैंगन कट करते हुई दिखाई दे रही है एक महिला वहाँ कूची के पास दिखाई दे रही है जो की टेहरा हुई है ।

यहाँ पे हम देख सकते है की दो पेड़ एक साथ जुड़े हुए नज़र आ रहे है उसके ऊपर एक बच्चा खड़ा हुआ नज़र आ रहा है ।